एक मंदिर बन रहा है।

इस बेड पर एक बेड शीट बिछाया गया है।

यह एक कॉफी स्टॉल का चित्र है।

और अगल बगल कांच के बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक पार्क का चित्र है इस पार्क में एक पुतला बनाया गया है।

बहुत पेड़ पौधे दिखाई दे--